एक बहुत बड़ा का जगह है जहाँ पस एक व्यक्ति नया-नया--

एक बहुत बड़ा एक होस हॉस्पिटल है।

जहाँ पर बहुत सारे पानी को सुरक्षित रखा जाता है।

और इसके दोनों साइड बड़े-बड़े वाहान नज़र आ रहे है।